यहा सारे बादल भी उमड़ पड़े है बहुत ही अच्छा नजारा है|

थोड़ी बहुत टहनी दिख रही है और ये जरा अच्छी भी लग रही है बहुत ही अच्छी दृश्य है।

यह किस चीज की स्टैचू है? पता नहीं पर अ इसमें बहुत सारी मालाएं जड़ी हुई है फूलों की माला और नीचे भी एक बहुत स अ सारे फूल भी पड़े हुए है और साइड और आस पास के कुछ पेड़ पौधे भी है।

भी ऑकेसन के लिए आप यहां से केक ले सकते हैं। एक सौ परसेंट वेजिटेरीअन है।